ये एक स्टेज का इमेज है स्टेज पे चार अलग-अलग गर्ल्स खड़ी हुई है अलग सेम टू सेम ड्रेस पहनें हुए है।

सामने चैनल गेट लगा हुआ हैजो की नीले कलर से पेंट है बच्चे नीचे बैठे हुए है पेंटिंग कर रहे है कागशीट लिए है काफी अच्छे लग रहे है।

लाइट का सामान रखा हुआ है। बोर्ड रखा हुआ है।

और रेड कलर से पेंट है। भैया नीले कपड़े पहने हुए है। हाथ में कड़ा पहने हुए हैं। काफी अच्छे लग रहे हैं।

ये जनमदिन का मेज है बच्चे का जनमदिन मनाया जा रहा हैं जो कि एक साल का है केक रखा हुआ है केक पर एक साल लिखा हुआ है ।